पेट्रोल पंप के जस्ट पास मे दो चार मोटर साइकिल दिखाई दिया है।

और पढ़ने के लिए यहां पर अलग अलग जगह बनी गई है अलग अलग बॉक्स बनाए हुए हैं।